यह बिल्डिंग के हम ऊपर हमें बहोत से खिड़कियाँ नजर आ रही हैं जिसमें परवेश द्वार के अंदर जालियाँ लगी है जो की काले कलर की दिख रही है।

ये इमेज में हमे बोहोत बड़ी और चौड़ी सड़क दिख रही है जो कि दो भाग मे बटी हुई है वो सड़क दो भाटो-भागो में बटी है तथा वह पर हमे बोहोत दूर दूर तक --

हरा कलर का कारपेट बिछा दिखरा हैं वहा पे हमें एक मोर की मूर्ति दिख रही है जोकि सिल्वर कलर की नज़र आ रही है वह मोर के पंख कपड़े से बने हुए दिखाई दे रहे हैं जोकि बहोत अच्छे लग रहे है।

हरे कलर की नज़र आ रही है ह-हिलती हुई नज़र आ रही है तथा वह ज़िंदा है वह अब मारी जाएगी तथा उनको काटा जायेगा और लोगो द्वारा उनको खाया जायेगा।

परोसे जा रही है वह लीची बहोत लाल रंग की दिख रही है।

यह इमेज में हमें बहोत बड़ी और बहोत चौड़ी घास का मैदान दिख रहा है जिसमें हमें एक आदमी घास को तोड़ते हुए नजर आ रहा है वह घास चुन रहा है तथा उसमे से पत्तियां निकाल रहा है।

ये इमेज में हमें एक बहुत बड़ा घर दिख रहा है जो की हरे रंग का गया है तथा वहाँ पे हमे नीचे एक प्रवेश द्वार काले रंग का दिखाई दे रहा है।